बहुत ही अच्छा इन डेकरैशन किया हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा आ लाइट भी है आस-पास में मकान दिख रहा है।

दुकान के अंदर बहुत ही सारा सामान है जो कुछ लिक्विड लिक्विड दिखे हैं चॉक्लेट वगेरा भी है यहाँ पे।

यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झील जैसा दिख रहा है जिसके पास सूखे जमीन है आस-पास की भी है।

यहाँ पे मकान बन रहा है जो की बहुत सारे यहाँ पे छड़ दिख रहे हैं करकट दिख रहा है पेड़ छोटे-छोटे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

और यहाँ पे एक पम्प दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारा गिट्टी दिख रहा है और कतोती है यहाँ पे आसमान दिख रहा है।

फेविकोल एक यहां पे चेयर भी है और चेयर पे एक तरफ गमछी रखा हुआ है पेपर है ये बड़ा दुकान है यहां पे लाइट है।

यहाँ पे एक दुकान है और यहाँ पर बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। आस-पास में बहुत सारा दुकान है। यहाँ पर एक डस्टबिन रखा है ब्लू कलर का। यहाँ पे साइकिल है धूप है।

और एक यहाँ से बड़ा सा बोर्ड भी लगा है एक बड़ा सा ग्रीन कलर का येलो कलर का वाइट अ बस लगा हुआ है उस बस में बहोत से लोग है एक बड़ा सा बैग भी है यहाँ पे ट्रॉली बैग --